इसके आसपास तीन टेम्पो खड़े हैं। एक है। टेम्पो का कलर पीला है हरा है। सामने एक मशीन खड़ी है लिंटर डालने वाली।

देख रहा है। एक इंजन को सही कर रहा है। एक देख रहा --

ए है एक अस्पताल है जिसका रंग लाल और सफेद है। इसके सामने मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं।